यंहा पर एक फूल है और व्हाइट और रेड कलर का है जो काफी अच्छा लग रहा है खिला हुआ है उसमे हरे हरे पत्ते है और कुछ हरी हरी घासे दिख रही है ।

यहाँ पर एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखरा है साइड मे खिड़की बना है और छोटे छोटे गमोलो बहुत सारे छोटा छोटा फू--